इस फोटो में मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।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

मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बोरियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारा रेता गीता दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।